और नेट भी लगी हुई है ऊपर आसमान दिख रहा--

नीचे मार्बल टाइल्स का फ्लोर है ऊपर बहोत सारी लाइट दिख रही है।